और वहां पर बाउंड्री बनी हुई हैं जिसका कलर ग्रीन एंड येलो है।

साइड में एक टायर है जिसका कलर ब्लैक है।

साइड में एक लड़का खड़ा हुआ हैं जिसने अपना ब्लैक कलर का मास्क --

साइड में कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं वाइट कलर की बॉटल्स हैं।

यहां पर बहोत ढेरों सारी पब्लिक है।

यहाँ पे कुछ शटर लगी हुई हैं जिसका कलर ब्राउन कलर है।

और ऐसा देख कर लगता है जैसे हॉस्पिटल है।

यहाँ पर एक मूर्तिया पड़ी हुई है।

दुकान पर लिखा हुआ है सीट एम_आर_पी_एफ अपोलो --

यहां पर बहोत सारे लोग काम कर रहे हैं।

साइड में एक कोकोनट का पेड़ भी है।

एक लेडी बैग लेके वहां पर जा रही है।

जिसने रेड कलर का स्वेटर पहना हुआ है।

ग्रीन कलर की ड्रेस पहने एक लड़का खड़ा हैं।